यहाँ एक बल्टी के आगे अ यहाँ कई सारी बाइक अ रखी दिखाई दे रही हैं तथा यहाँ कुछ कारे रखी दिखाई दे रही हैं।

एक यहाँ यामाहा का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसपे आ--

रेवसा योर हर्ट है एस.एस इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

ब्लैक व्हाइट बलून लगे है। एक आदमी ले जाते दिखाई दे रहा है एक आदमी बाहर चेयर पर बैठा है

ग्राउंड में एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

यहाँ काँच की खिड़की दिखाई दे रही है आसमान यहाँ नीला दिखाई दे रहा है काँच पे यहाँ पेड़ की प्रतिबिन दिखाई दे रही है।